चेयर लगा हुआ है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और साइड में काउंटर है जो कि खाली पड़ा हुआ है उसके पीछे--

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का है।

और वो बहुत ऊंचा जगह पे बैठा हुआ है।

और इसमें एक बकरी बैठा हुआ है।

यह फुटेज एक रेलवे स्टेशन का है जिसमें की ऊपर साइड पूल बना हुआ है और नीचे--

और साइड में एक खंभा है जो कि बांस का है।